यहाँ फोटो एक पिंक कलर के घर का है जब ओल्ड टाइप का घर है।

और यह बहुत बडा गेट है और इसके पीछे स्कूल को नीले कलर में लिखा गया है।

यहाँ एक पेट्रोल पंप का फ़ोटो हैं जिस पे एक पेट्रोल पंप रोड पर लगा हुआ है।